नीचे टाइल्स बिछी हुई है और कुछ पर्दे वगेरा लगे हुए है और यहाँ पर गेट भी लगा हुआ है।

पे एक गेट भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ खिड़कियाँ भी लगी हुई है।